शीशे में अपने बाल सही करता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लड़के जिम करते हुऐ दिखाई दे रहे है यहां पर एक शीशा लगा हुआ है जो काफी बड़ा है।